इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जोकि चार खंभों पर है।

काली जैकेट पहनी हुई है आदमी के हाथ में लाल धागा बना है पीछे तीन रंग के गुब्बारे हैं।

सफेद और नारंगी है लाल रंग का स्टूल नज़र आ रहा है ऊपर सफेद कलर की पुताई है जहाँ पर लाइट लगी हुईं हैं।

उस पर हमें लाल कलर का कुछ झंडा जैसा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक जानवर का अस्पताल का है जहाँ एक कुत्ते का ट्रीटमेंट किया जा रहा है कुत्ते का रंग सफेद है।

पीछे हमें पीले रंग की दीवार नज़र आ रही है और एक बक्सा रखा है जिसका रंग काला है।

एक टेबल है जिस पर कांच के गिलास रखे हुए हैं बाहर पेड़ लगे हैं।

ये चित्र एक कार सर्विस की दुकान का है जिसके ऊपर काले रंग के बोर्ड पर सफेद रंग से सर्विस लिखा हुआ है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने सहारा की शर्ट टी-शर्ट पेहनी हुई है रोड पर एक गड्ढा बना है जो पानी से भरा है।

सामने एक कृष्णा जी की मूर्ति की पेंटिंग लगी है जिस पर हार डला है दो गणेश जी की मूर्तियां भी रखी हैं।

यहाँ पर हमें सफेद रंग की काले रंग की बहुत सारी कार नज़र आ रही हैं।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट का है रेस्टोरेंट में हमें बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही--

कुछ कुर्सियां रखी हुईं हैं इस दुकान का नाम रामनाथ साउथ सिस्टम है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि क्रेन से खुदाई चल रही है यहाँ पर हमें चार आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जहां एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है इस चित्र में हमें ट्रैक्टर साईकिल दिखाई दे रहे है।